बहोत ही अच्छी लाइट लगी हुई है।

खेल रहे है जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने है|

पेड़ के पीछे एक बहोत ही बड़ा टॉवर भी दिख रहा है।

यहाँ पर लरियों मे --

और एक ने ब्लू कलर की शर्ट और एक ने --

जिस पे एक आदमी--

दीवालो पर लाइटे भी लगी हुई है|

टोटो के बगल में एक बाइक है और बाइक के बगल में एक घर का गेट --

कचड़े भी बिखरे हुए है|

और ग्राउंड के अगल बगल बहोत सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिख रही है।

बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे और कुछ--

यह एक ग्राउंड है जहाँ पे बोहोत सारे लडके --

यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे एक ही तरह के--

काग्चे रखी हुयी हैं और वो चेयर पर बेठे हुए हैं और उनके आगे एक टेबल रखा हुआ है।

उनमे से किन सभी के हाथ में अगरबती है और कुछ --

एक लडक खड़ा हुआ है और एक लड़का और एक लड़की हैं।

और वहाँ पर गेट के आगे गार्डनिंग भी किया हुआ है।